जैसे की बेसवाशिंग कमोड शीशा

ओबिओसली एमे बड़ी मशीन बाटे आ शीशा बाटे आ छत पर लाइट लागल बा--

अह थम्सअप स्प्राइट माज़ा किनले की बोतल।